यहां पे व्यायाम करने के लिए बहुत सारे मशीनें भी दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ टेबल भी दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ बैनर लगे हुए भी दिखाई दे रही है।

यहां पे पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर आइडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक मार्केट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

बहुत रंग बिरंगे लाइटें लगाई गई है नीचे हरे कलर के कारपेट बिछाई गई है।

यहां पे नीचे छोटी छोटी झाड़ियां भी दिख रही है।

यहां कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रही है।

यहां एक पोस्टर लगा हुआ अभी दिखाई दे रहा है।

यह एक रास्ते का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह एक कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक फोटो फ्रेम लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर गुड ऑनली लिखा दिखाई दे रहा है।

यह बहुत शांत ही इलाका लग रहा है।

यहां पे बल्प जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक बैंक का दृश्य दिख रहा है यहां पर लोहे की ग्रिल भी दिख रही है।

यहां पे कुछ महिलाएं और पुरुष खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पे एक मशीन भी दिखाई दे रहा है।